और मंदिर को काफी अच्‍छे ढंग से बना रखा है टाइलों का बहुत अच्‍छा शो उसमें मंदिर में डाल रखा है और काफी अच्‍छा अच्‍छे ढंग से म‍ंदिर को बना रखा है गोल्‍डन पेंट बगैरह भी कर रखा है मंदि --

ये लड़के का पुतला है उसमें लड़के के कपड़े पहना रखे हैं और ये काफी अच्‍छा लग रहा है।

और पर्दे क-को काफी अच्‍छे ढंग से लगा रखा है कोई पिंक कलर का और रेड कलर का कोई पर्पल कलर का और पर्दों का शो काफी अच्‍छा लग रहा है काफी मेन्‍टेंन से इनको लगा रखा है।

और जैसे गांव जैसे मालूम पड़ रहा है और काफी अच्छा दिख रहा है।

और यहाँ पर किसी रोड का चित्र है जिसमें बहुत सारी गाड़ियाँ चल रही है और सामने कोई दुकान है जिसमें पटाखे वगैरह हैं तो अपने पटाखे बेज रहा है और ये दिवाली के टाइम की पिक्चर है और इसमें काफी अच्छे से पटाखे सजा रखे हैं अलग-अलग प्रकार के पटाखे में और काफी लोग भी दिखाई दे रहे हैं जो पटाखे खरीदने --

यहां पे किसी मार्केट जैसा और यहां पे मेन रोड जैसा मालूम पड़ जिसमें बहुत सारे दिखाई दे रहे है और इसमे ऑटो बाईक बगैरह भी है जो अभी शायद किसी जाम की वजह से रुक रखे हैं और सामने दुकान दिखाई दे रही है जो काफी अच्‍छी लग रही हैं और दुकान में बहुत सारे --

और इस फोटो में काफी पहाड़ हैं पत्थर हैं और नदी बह रही है नदी काफी अच्‍छी लग रही है और पहाड़ो में बहुत सारी वर्फ है जो काफी अच्‍छी लग रही है और काफी मिट्टी भी है और पानी बहोत धीरे-धीरे आगे बढ़ रहा है और काफी सुन्‍दर लग रहा --

और यहाँ पे एक बिल्डिंग की फोटो है।

और यहां पर किसी नदी बड़ी सी नदी का चित्र है जिसमें एक पुल भी है और लोग दिखाई दे रहे है नदी को देख ने के लिए और नदी के उस पार नदी के उस पार भी काफी सारे पेड़-पौधे है घर वगैरह है जो काफी अच्छे लग रहे है देखने में।